छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुएएए --

उसमें पेड़ भी दिखाई दे रही है बादल भी दिखाई दे रहा है नीला-नीला।

एक मकान दिखाई दे रहा है | मकान सफ़ेद कलर का पेंट हो रहा उसमे हुई है | आगे पेड़ भी खड़ा हुआ है बाइक भी खड़ी है कार --

एक ट्रॉली भी खड़ी हुई है मैदान में पड़ा हुआ है वैन वगेरा भी खड़ी हुई है पेड़ भी दिखाई दे रहे है बादल भी दिखाई दे रहा है सफ़ेद-सफ़ेद।

एक रोड दिखाई दे रहा है | रोड पे दो जेंट्स खड़े हुए हैं और एक बस भी खड़ी हुई है ऑटो भी खड़ी हुई है |

खिड़कियाँ भी बनी हुई है लाइटिंग भी --

चार दुकानें बनी हुई है तीन में --

भी बनी हुई है छत पर दो जेंट्स दिखाई दे रहे बादल भी दिखाई दे रहा है काला-काला सा।

कुछ पेड़े भी लगे हुए है कुछ सुख भी गए है एक मकान दो मकान भी बने हुए है दो --